सामने एक बड़ा सा लम्बा सा खम्भा है । और आर्टिफिसियल शेर बनाया गया है ।

सामने अन्दर एक आदमी खड़ा है जिसने येलो टी-शर्ट पहेनी हुई है ओर् ब्लेक कलर की केप्री पहेनी हुई है।

जो साइड में बने हैं उन दोनों पर वाईट वाश किया हुआ और जिस सामने है उस पर गोल्डन कलर का वाश किया हुआ है।

कंप्यूटर बहुत सारे हैं जो की सारे कंप्यूटर बंद हैं।

इस तस्वीर में जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो दृश्य किसी --

कुछ बड़ी-बड़ी रस्सियाँ बंधी गई है । जैसे की यहाँ पे कुछ --